हमारे सामने एक बोहत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह बिल्डिंग काफी लम्बी एवं काफी चोड़ी है इस बिल्डिंग के आस-पास हमें कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है इसके आस-पास हमें कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जोकी हरे-भरे है।

हमारे सामने एक पुल दिखाई दे रहा है यह पुल काफी लम्बा एवं काफी चौडा दिखाई दे रहा है इस पुल में के दिवाल पर लिखा है वाहन स्टैंड ट्रैक्टर बुलेरोस्कर्पियो पिकउप पचास ऑटो बीस बस ट्रक सौ ।